बट ये एक रेलवे ट्रैक दिखाई दे रहा हे यहाँ पर मुझे एक ट्रैन भी दिखाई दे रही हे जिसका कलर ब्लू वाइट दिखाई दे रहा हे इसके ऊपर इंडियन रेलवे भी लिखा हुवा हे।